यहापे काफी सारे पत्थरेभी दिखाई दे रही है जो बहुत बड़े बड़े दिख रहे उपर आसमान भी दिखाई दे रहा है हरे भरे झाड भी दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में एक मस्जिद नजर आ रही हैं। यह मस्जिद में बहुत जादे मीनारे नजर आ रही हैं। यह मस्जिद बहुत बड़ी नजर आ रही हैं।

इस इमेज मे कही घास भी दिखाई दे रही है और ये घास काफी हरी भरी दिख रही है एक रस्सी भी दिख रही है जिसका पीला कलर दिख रहा है।

और यहा पे काफी सारी गाड़िया खड़ी हुई नजर आ रहे है और यहा पे काफी सारा एक एक फारशीया बड़े बड़े नजर आ रहे है और उपर आसमान नजर आ रहा है।